बहुत बड़ा हॉल है और हॉल के आगे में लिखा हुआ है अप्रह अप्रवाशन।

और एक गाय है और साइड मे एक व्यक्ति साइकिल से और एक व्यक्ति बाइक से जा रहे है ।

टोटो या फिर ऑटो मिलता है और साइड मे फोटो घिचाने वाले भी आए है इस मेले में।

ये एक मेडिकल है और मेडिकल में दवाऐं मिलते हैं।